तट पे बड़े-बड़े पत्थर की डिजाइने बनी हुई हैं। सीढ़ी बनी हुई दिखाई दे रही है। सामने बड़ा सा खंभा बना हुआ दिखाई दे रहा है।

एक बड़ीसी टोकरी में उसके ऊपर एक कागज़ बिछा हुआ है जिसको न्यूजपेपर बोलते हैं।

सामने छोटा-सा मंदिर बना हुआ है। उसमे लाइट लगी हुई है। कुछ फ़ोटोज़ भी लगी हुई है।

जड़े बिछी हुई दिखाई दे रही एक व्यक्ति खड़ा हुआ जो कि पानी पीया है।

और बाजू में एक बड़ी सी अलमारी रखी हुई है जिसमे कांच लगे हुए हैं एक बाजु में एक बड़ी सी टीवी है।

खिड़की बनी हुई दिखाई दे रही है। नीचे का फ़र्श ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है।

ये एक बड़ा-सा गैरेज हाॅल है जिसके सामने कुछ गाड़ियां कुछ गाड़ियों के सामान रखे हुए दिखाई दे रहे है। चक्के वगैरा--

कुछ दुकानें नीचे लगी हुई हैं तो कुछ दुकाने सामने लगी हुई है। कुछ लगी हुई है।

सामने मैन गेट भी है और मैन गेट के सामने कुछ बड़े-बड़े लाईट स्टेंड लगे हुए हैं।

यह एक बैक्ति नीले कलर कपड़ो में एक थाल पकडे हुए है।

क्योंकी बहोत सारे दिखाई दे रहे हैं। उनकी पूंछे और उनमे एक ही रंगो के अधिक टाइप की दिखाई --